इसमें दो व्यक्ति बैठे हुए है।

यह एक प्रकार का स्कूल दिखाई दे रहा है।

और एक स्त्री भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पेहने हुए हैं।

और कुछ व्यक्ति झूले पर झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये स्टूल ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें एक पंखा लग रहा है जो की वाइट कलर का--

यह एक प्रकार का खेत दिखाई दे रहा है जिसमें चारों तरफ हरियाली है।

जिसमें एक रेलवे की पटरी जा रही है।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

जिनमें से तीन पुरुष है और एक महिला है।

और इसके आस पास कुछ बिल्डिंग भी खड़ी दिखाई दे रही--

इसके दीवार पर व्हाइट कलर होवा हुआ है।

इस गार्डन में चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।